घन सा जंगल है। जंगल के अंदर कई सारे पौधे पेड़ लगे हुए है। एक रास्ता वहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक ट्राफिक सिंगनल का फोटो है। सामने बहुत बड़ी चट्टान दिख रही है। और चट्टानों पर कई सारी हरी हरी झाड़ियाँ दिखाई दे रही है। बड़े बड़े पेड़ है।